यहां ओप्पो कैमरा फोन करके कुछ लिखा हुआ है और ये रियलमी वगेरा है।

और यहाँ पे देख सकते है कुछ सामान-वमान भी है और यहाँ पर बहुत ही भीड़ चल रहा है और अगल-बगल में भी बहुत सारे दुकान है और बहुत ही बड़े-बड़े दुकान है और बहुत ही छोटे-छोटे भी दुकान है और इधर एक पानी का बॉटल रखा --

और यह बहुत ही अच्छा लग रहा है और इधर देख सकते है कुछ ट्रिमर-व्रिमर भी लगा हुआ है और यहां पे देख सकते है छोटा-छोटा घास-उस भी है और ये बहुत ही हरा-भरा देखने में लग रहा है।

और ऊपर में लाइट वगेरा सब डाला हुआ है और ये बहुत ही सुन्दर है बहुत ही अच्छा लग रहा है।